यहाँ एक बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी सादे रंग की।

लाल-लाल जमीन नजर आ रही है। खुला नीला आसमान दिख रहा है।

कुछ चेयर दिख रहे हैं। पंखे दिख रहे हैं। कुछ लाइट नजर आ रही है। दीवार पर कुछ कैलेंडर और पोस्टर्स लगे हुए दिख रहें --